एक लोहे की रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है और एक--

यहां पर एक ऑफिस टाइप का बना हुआ है।

और सामने झालर भी लगाई गई है और एक--

एक पेड़ के नीचे बहोत सारे स्टैचू बने हुए दिखाई दे रहे हैं यें--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

कंबार लिखा हुआ है और नीचे साइड उसमे लाइनिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है और बस के पास एक ऑटो भी --

यहां पर एक दुकान हैं जिसकी अलमारी में बहुत सारे--

गणेश जी भी बै बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और र लाफी मुद्रा भी बैठे हुए हैं।

बगल में ग्रीन कलर का पर्दा भी लगा हुआ है।

ट्रक ड्राइवर भी बैठा हुआ है ओर इसमें ट्रक पर इवर ग्रीन --

और उसके सामने बहोत सारी बिल्डिंग भी लगी हुई है सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने व्हाइट कलर की दीवाल है जिस पर एक--

सामने व्हाइट कलर की दीवाल है और उसके ऊपर पेड़ भी--

और ए दीवाल पर एक सीनरी टंगी--